एक काली कलर की दो पहिया वाहन दिखाई दे रही हैं नीचे रखा हेलमेट दिखाई दे रहा हैं।

नीले रंग का कचरे का डब्बा दिखाई दे रहा है एक झूला दिखाई रहा है।

यह एक पार्क का चित्र है सामने एक जंगल दिखाई दे रहा है कुछ व्यक्ति और महिलाएं दिखाई दे रही है फिसल पट्टी और झूले दिखाई दे रहे है।

तीन लाल रंग के स्टूल रखे दिखाई दे रहे है एक आदमी कुर्सी पर बैठा दिखाई दे रहा है।

शैंपू वगैरह दिखाई दे रहा हैं।